इमारतें खिड़कियें भी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

च नीचे में मार्बल का पत्थर लगा हुआ हु है और ऊपर में टाइल्स --

जैसे कि आप सब लोग इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहां बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

जूत्ते और सैंडील चप्पले भी नजर आ रहे हैं सॉक्स भी --

दीवाल पर पेंट किया हुआ है सफेद कलर नीचे भी बहोत सारे मार्बल के पत्थर लगे हुए दिखाई दे रहे--

एक मॉल जो बैलून से ही सजा है बहोत सारे रंग बिरंगी के बैलून लगाए गए हैं।

बाहर में बाइक खड़ा हुआ है और दीवार पे पीले रंग का पेंट किया हुआ है लाइट भी--

सारे आदमियों के बीच एक थकी हुई महिला नजर आती हुई दिखाई पड़ रही है।

पैर को मोड़ते हुए हाथ को मोड़ते हुए योगासन कर रहे हैं।

खिड़की ही खिड़की नजर आ रहे हैं चारों तरफ बहौत अच्छा है।

जैसे कि इस तस्वीर में आप सब लोग देख रहे है दीवाल पर बहोत सारे रंग बिरंग के पेंट किए हुए है।

एक आदमी जो अपना बॉडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।